यहाँ पर मुझे सात लड़के दिखाई दे रहे हैं एक लड़का ड्रॉइंग शीट पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं और सभी लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

इसके बगल मे एक लाइट लगा हुआ दिखई दे रहा है ।